इस इमेज में हमें को एक मैदान दिखाई दे रहा है इस इमेज में हमें --

यहाँ बहुत सारी साइकिल-साइकिल की दुकान